दिखाया जा रहा है की यहाँ पर ट्रैन की पटरिया दिख रहे है जहा--

बहुत सारे कटे फूटे पत्थर भी है और आसमान भी दिख रहा है।

और एक बाहर एक कुछ लिखा हुआ है।

वहां पर आसपास बहुत सब टूटा फूटा है और एक गाडी भी जा रही है।